नदी ए नदी के अंदर में एदे पानी के जिहाज मन हेवय रस्सी वा मन दिखत हे एदे टिव सिव मन दिखत हे ए जघा मस्त ओदे खिड़की वगेरा दिखत हे अंदर म --